देख सकते हैं कि इसमें पीछे हरियाली वगेरा कुरा -करकट बहुत ज्यादा जम चूका है इ सफाई होना बहुत जरूरी है आप लोग देख लीजिए।